औ ये नीचे आदमी काम रहा है इसमे ये धागे है।

इसमें मैं देख पा रही हूं ये पिंक कलर की दीवार है बाउंड्री जो करी हुई है और अंदर इसके रेत पड़ा है।

यहां पर मैं देख पा रही हूं कि एक पेट्रोल पंप का दृश्य है जहां पर एक बाइक वाला खड़ा है और एक ऑटो वाला खड़ा है।

यहां में देख पा रही हूं कि एक ये फ्लैट टाइप है और ये सामने--

लिख एक गाड़ी खड़ी है जिसमें लिखा हैं मैनेज माई शिफ्ट टाइम ।

ए_सी के पंखे लगे हुए हैं यहां पे और साइड से सीढ़ियां जा रही है।

दो जने इसमें डेकोरेशन का सामान काम भी कर रहे हैं जो फ्लावर लगे हुए हैं यल्लो ग्रीन व्हाइट अ ये दो लड़के खड़े है एक ने ब्लैक टी-शर्ट पहनी --

इसमें मै देख पा री हूं कि ये जिम करने वाला है।

इसमें मैं देख पा रही हूं कि ये एक मैदान है।

इसमें कही तरह की एक्टिवा दिखाई दे रही है जैसे ब्लू ब्लैक ।

मार्बल ये सब चीजे यहां पे मिलते हैं।

ये वाशबेसिन टॉयलेट सीट लगी हुई है पीछे ये टाइल लगी हुई है।

और अंदर हीरा शीशे लगे हुए हैं और बाहर इसमें टे अ टेबल चेयर लगी हुई हैं ये पेड़ लगे हुए हैं यहां पे।

यह फोटो है और यहां पे पंडित जी बैठे हुए हैं दो पर्सन पूजा कर रहे हैं।